और मिट्टी है और उधर जंगल है जो कि सुख गया है।

और लाइट लगा हुआ है । इसमे छत मे भी पेंटिंग डिज़ाइन दिया हुआ है अच्छा और एक दीप जल रहा है और एक पानी है । एक गमला रखा हुआ है ।

इसमें एक पंखा है बैलून है ऊपर से टीना दिया हुआ है इसमें। कुर्सी है टेबल है एक रसगुल्ले का डब्बा रखा हुआ है बगल मे शीशा का --

पीछे मकान सब बना हुआ है बिल्डिंग बहुत सारा इधर दुकान का शटर है जो कि बंद है अभी गैस सिलिंडर रखा हुआ है।